मेरे आंखो के सामने मे बहोत ही अच्छा टमाटर का पौधा लगा हुआ है।

जो भूरा कलर क का है और ये आलू मे मिट्टी-बिट्टी भी नज़र आ रही है बहोत सारा लग रहा है ये आलू और बहोत ही अच्छा है।

मेरे आंखो के सामने मे बहोतं ही सुंदर ये एक अंगूर रखाया हुआ है बहोतं ही अच्छा दिख रहा है।

मेरे आंखो के सामने मे बहोतं ही सुंदर ये एक अंगूर रखाया हुआ है बहोतं ही अच्छा दिख रहा है।

और ये अगल-बगल में बहोत सारा घर का नज़र आ रहा है और पेड़-पौधे नज़र आ रहे है और बहोत ही अच्छा इन लोग क्रिकेट --

मेरे आँखों के सामने ए बहुत ही सुंदर स्टेशन नजर आ रहा है और बस खड़ा हुआ है और यहाँ पर दो तीन जने इन्सान नज़र आ रहे है और उपर में सिंटेक्स वगैरह लगा हुआ है।

बहुत जने है और एक जने मैन है और यहाँ पर पुस्तकया भी जैसे मढ़ा हुआ है और नीचे में चटाई जैसे हुए है सब लोग हाथ को जोड़े हुए है योगा कर रहे हैं।

मेरे आँखों के सामने ये बोहोत ही सुन्दर घिसलपट्टी नज़र आ रहा है इसमें चढ़ते हैं और ये मुड़ा हुआ है इससे घिसलते हैं बच्चे लोग।